और कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही है छोटी सी।

इस फोटो के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है।

इसकी खिड़कियां भी नजर आ रही है शीशे की।

घने घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं अगल बगल।

ब्लॅक कलर के इसके लोहे लगे हुए हैं तथा स्टील भी नजर आ रही है एंगल --

अगल बगल खिड़कियां नजर आ रही हैं।

मैदान के सामने --

एक बहुत बड़ा सफेद रंग का मकान भी दिखाई दे रहा है।

भी कई पेड़ है।

एक सामने दुकान भी नजर आ रही है जिसके अगल बगल भी कई दुकानें है।

जिसके पास जो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं तथा एक सड़क है सड़क के इस पार एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप का जिसके अंदर लाइट जल रही है।

जो काफी जगमगा रहा है।

कालीन के नीचे ऊपर खड़ा है।

मैदान के चारों तरफ के सामने बाउंड्री भी नजर आ रही है।

और मैदान की से एक सड़क है।

लोग आते जाते नजर आ रहे है तथा इस साइड की और ब्रिज के--

ऊपर क्या छोटे छोटे पौधे तथा नीचे क्या बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

जिसके ऊपर काफी लंबा एक नीले कलर का बोर्ड है बिल्डिंग के आगे एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है तथा --

यह फोटो में आप देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली से पारा पार्क नजर आ रहा है।

भवन खंबे दिखाई दे रहे हैं तथा एक सड़क भी नजर आ रही है जिसके किनारे--

तथा मालगाड़ी के अगल बगल में एक पा एक भव बहुत बड़ा मैदान भी नजर आ रहा है जिसके उपर खंबा लटका हुआ है कई खंबे --

भवन के स्टेज के बीच में एक सोफा है बगल में दो लाल कुर्सियां है।

तो चारों तरफ घडियो से सजा रखा है औ और ऊपर भी लाइटे लगी हुई है।

कई पौधे छोटे छोटे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं।

सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है उसके बगल भी एक छोटा सा घर है।

बीच में एक गोल आकार का ग्राउंड है।

सामने हरे घरे घने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तथा पहाड़ पर बहुत सारे--

तथा उनके पीछे एक दीवार है दीवार पर कई खिड़कियां भी नजर आ रही है।